यहां पे दीवाल का कलर व्हाइट दिखाया जा रहा है और यहां पे एक व्यक्ति भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे बाहर बहुत सारी गंदगी दिखाई पड़ रही है।

यहां पे दो गाड़ी भी दिखाई दे रही है और बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

जहां पे बोरी में बहोत कुछ चावल रखे हुए हैं।

यहां पे खिड़की भी नजर आ रहा है और यहां पे बैलून से पूरा रूम को सजाया गया है।

यहां पे बोर्ड पे राजकीय कृत उच्चालय विद्यालय राज्य बना लिखा हुआ है।

यहां पे एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मस्जिद का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पे दीवाल का कलर व्हाइट दिखाया गया है।

यहां जमीन पे बहुत गंदगी भी फैलाई हुई है।

यहां पे रेक पे बहोत सारी दवाई रखी हुई है और एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी चीजें रखी हुई है यहां पे रैक का कलर हल्का ब्लू में दिखाया गया है।

यहां पे सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में दो व्यक्ति पत्थर के नीचे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां दीवाल का कलर व्हाइट है और बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

इस फोटो में बहोत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

यहां पे बहोत सारी रैक पर वर्तन रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारी पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है और नीचे बहुत बड़ी बड़ी घास भी दिखाई दे रही है।